चारो तरफ आसमान दिखाई दे रहा है बहुत सारे पेड़ है तार बाउंड्री है तार बाउंड्री है बहुत सारे पेड़े लगे हुए है अन उन चारो तरफ हरियाली दिखाई दे रही आसमान दिखाई दे रहे --

खाई है इसके चारो तरफ पेड़-पौधे है बीच मे खाई है पथर है उपर नीचे उची नीची जगह है आसमान दिखाई दे रहा।

गॅरेज जहा पर कार सुधारने के लिए आती है बाइक सुधारने के लिए आती है इसमे बहुत सारी मशीने है कूलर रखा हुआ है लाइट लगे हुए है। और सुधारने के लिए--

मच्छलिया रखी हुई है बहुत जो की खाने के लिए तल रही है बिक रही है। लोग बेच रहे इनके उपर ब्लड लगा हुआ है कट-पिट रही है।

बादल दिखाई दे रहे है हरियाली दिखाई दे रही बहुत सारी चारो तरफ पत्ते दिखाई दे रहे बहुत सारी हरियाली है ऊंची नीची घाटिया--

साई निवास लॉ लॉजिंग यह एक निवास है जिसमे सभी के ठेहरने के लिए व्यवस्था है पंखे लगे हुए है। एक मंदिर--

यहाँ बहुत अ रोड बोहोत साफ़-सुथरी हैं आसमान दिखाई दे रहा हैं समुद्र हैं समुद्र के किनारे--

बोहोत ही अच्छी सीन हैं ऊपर आसमान में बादल दिखाई दे रहे है चारो तरफ बड़े बड़े पेड़ हैं जो छोटी छोटी हरी हरी--